यहाँ पे बड़े पोस्टर भी लगे दिखाई दे रहे हैं जिसपे एक आदमी छपा हुआ है।

जिसने बैगनी और सफेद रंग की शर्ट पहन रखी है।

यहां पे कुछ अलमारियां दिखाई दे रही है जो पीले रंग की हैं।

एक आदमी माइक के पास में खड़ा है जिसके हाथ में एक सफेद रंग का पर्चा भी है।

यहां पे बहुत सारी कुर्सियां दिखाई दे रही हैं जो पीले और नारंगी रंग की है।

यहां पे एक लड़का झूले के ऊपर बैठा दिखाई दे रहा है।

यहां पे डाला भी बन रहे हैं जो नीले और सफेद रंग के हैं।

एक आदमी पत्थर पर बैठा हुआ है जिसने काले रंग की शर्ट पहन रखी है।